दिख रहें हैं जो नीली हरी कोटी पेहने हुएं हैं ऊपर नीला और--

रखी है जिसमें धागा दिख रहा है।

रहा है पीछे एक दीवाल दिख रही है जो--

रही है और एक बाल्टी रखी हुई है नीचे कुछ पीली--

सामने एक नदी दिख रही है जिसका पानी--

और कार दिख रही है दोनों साइड बहुत सी--

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमें बहुत सारे फल--

रहे हैं तीन बच्चे सेम ड्रेस पहने हुए हैं और एक लाल काले कपड़े पहने हुए है पीछे एक रेलिंग दिख रही है और--

बड़े ऊपर खंभे लगे हुए हैं जिनमें ऊपर बहुत सारी लाइट --

नहा रहे हैं पानी का कलर नीला दिखाई दे--

सामने एक स्टेज दिख रहा है जिस पर बहोत सारी मूर्तियां--

फ्रॉक में गोल्डन कलर की बॉर्डर लगी हुई है और पीछे ब्लैक कलर --

दिख रही है और बहोत से आदमी दिखाई दे रही है। दो खम्बें--